यहा लाल सफ़ेद रहिहे है छाते है अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चे में पेड़ लगता है बड़े पेड़ लगता है.छाते है।

जा रहे थे बहुत अच्छा लगता है चाहते हैं अच्छा लगता है छोटे-छोटे बच्चों में पूरा जवाब दे दूंगा अच्छा लगता है चाहते लगाना है।

पेड़ है यहा एक बड़े पेड़ है सुंदर लगता है चाहते है पोधे-पेड़ है अच्छा लगता हैचाहते है यहा एक अच्छा लगता है चाहते है। बहुत सुंदर लगता है चाहते है।

अच्छा लड़की है एक अच्छा लड़की है छोटे-छोटे बछे मे बुरा जवाल देतुंगा सड़क पर जाते है मोटरसाइकल सड़क पर जाते है बड़े पेड़ है सुन्दर नदिया बहती है आरण्य ऐसे बड़े-बड़े पेड़ अच्छा लगता है।

पहाड़ है कपड़ बिक रहे है छोटे छोटे बच्चों मे बैट लगता है सड़क पर जाते है यहा एक छोटे छोटे बच्चो मे दिख रहा है छोटे छोटे बच्चो मे दौड़ लगाना है सड़क पर जाते है मोटर साइकिल दौड़ लगाना --